दो तीन मंजिला है काफ़ी बाहर में। हार --

इसमें काफ़ी सारी वस्तुएँ रखी गई है।

और एक नाव को चला रहा है। एक --

मछली पकड़ने के लिए जाल को रखा और फेक रहा है।

एक तल्ला बन चुका है और दूसरी तल दूसरी --

काफ़ी लोग आगे में खड़े हुए हैं। कुछ लोग बैठे भी हैं।

इस फोटो में देखने से लग रहा है कि यह कोई --

जिसका गेट खुला हुआ है और ये जनपत गाज़िपुर में है।

यह और ये झूला को लगता है क् हम लोग को ब्रेक डांस बोलते है।